यहाँं हमें एक नदी नजर आ रही है जिसके आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं। एक जगह पे हरे और एक जगह पे काले। इस नदी का पानी थोड़ा सा काला है और थोड़ा सफ़ेद है।

ये फोटो केबिन का लग रहा है और साथ ही हमें दो सीढ़ियाँ देखने को मिल रही हैं।

रेड कलर के व्हाइट कलर के ब्लैक कलर के येलो कलर के और साथ ही चेयरस नजर आ रही हैं। जो ब्लैक एण्ड व्हाइट कलर की हैं।

दिख रहा ही | बहुत बड़ा मैदान हे और एक घर दिख रहा है और एक नीला पाइप दिख रहा --

यहाँ पर वाइट कलर की छोटी सी शेल्फ बनी है और एक पंखा लगा है।

अ इस फोटो में शायद किसी दुकान के बारे में बताया है के यहाँ पे बोहोत सारी चीजें रखी हैं खाने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें ये चीजें जो हैं खाने की है और कुछ बाटी जैसा भी रखा है।